और सामने ही कांच दिखाई दे रहा है कांच के पास बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

सामने ही एक बड़ा सा घना पेड़ दिखाई दे रहा है और कुछ केबल्स दिखाई दे रहे है लाइट --